सामने के साइड में चार पांच गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के चारों ओर चार कुर्सियां भी दिख रही हैं।

जहां पर सामने की ओर गनेश भगवान की मूर्ति खड़ी दिख रही है।

चारों ओर बहुत सारे लड़के फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति पैरों के बल बैठा हुआ दिख रहा है।

तथा सामने की और कुछ विद्युत उपकरने भी दिख रही हैं।

टेबल पर ग्लास और बॉटल रखा हुआ दिख रहा।

सामने की ओर दो व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं।

फर्श यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

जिसके पीछे एक बस भी खड़ी है।

बस की हेडलाइटे दिख रही है।

एक लड़का साइकल पर बैठे हुए दिख रहा है।

पीछे की साइड में एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

यह चित्र किसी मूवी थिएटर का लग रहा है।

लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा--

यहां पर बोहोत सारे टेबल्स और चेयर रखे दिख रहे हैं।

पीछे की ओर कुछ महल जैसा दिख रहा है।

यह चित्र किसी होटैल का लग रहा है।

यह तस्वीर किसी बेडरूम का लग रहा है सामने की साइड में एक बेड दिख रहा है।

सीलिंग पर फैन और लाइट भी दिख रही है।

विंडो में कर्टेंस लटके हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में छे मजदूर दिख रहे हैं।

सामने की ओर टू व्हीकल और फोर व्हीकल गाड़ियां लगी हुई हैं।

इस चित्र में एक लेडी बैठी हुई दिख रही है।

फर्श पर एक दो स्टूल रखे हुए दिख रहे हैं।

पीछे की साइड में एक स्कूटी को रखा गया है।

पीछे की साइड में कुछ हरे वृक्ष भी दिख रहे --

घर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

सामने की साइड में दो व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

लेफ्ट साइड में एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है जिसपे गौशाला लिखा हुआ है।

सामने की ओर सीढ़ियां दिखाई दे रही है।